एक चिट हा लाल कलर का रखा हुए है नीचे--

आसमान दिख रहा है आसमान में बादल छाया हुआ दिख रहा है यहां पर बॉल लगा हुआ है लोहा का पूल दिख रहा है।

पहले रखा हुआ दिख रहा है घर है जो गुलाबी कलर जो पेंडिंग है इसमें बाबा जी का फोटो रखा हुआ है य घर दिख रहा है।

बहुत बड़ा बड़ा मछली सब दिख रहा है आपको पाइप दिख रहा है जो पानी डालता हुआ दिख रहा है डन में--

ढोल दिख रहा हैं पानी दिख रहा हैं पानी पीते हुए जैकिट रखा हुआँ दिख रहाँ हैं।

पेट्रोल पंप के अंदर बॉल बढ़ते हुए दिख रहा है अधिक बॉल बढ़ता हुआ दिख रहा है यहां पर--

पर मशीन यहां पर पाइप लगा हुआ दिख रहा है यहा पर लोहा भी दिख रहा है।

यहाँ पर बल्ब दिख रहा है बरता हुआ यहां पंका लगा हुआ है।

पाइप भी लगा हुआ है या खिड़की इसमें दिख रहा है।

यहां पे एक पानी दिख रहा है यहां पर नाव दिख रहा है बड़ा सा इस नाव में घर जैसा बनाया हुआ है इसमें लोहा दिख रहा है इसमें परदा भी दिख रहा है।

या पथ भी दिख रहा है पर छोटा भी नाव दिख रहा है एक पानीर बल दूर दूर तक पानी दिख रहा है।

यहां पर घर सब दिख रहा है बहुत सारा यहां पर ईटा दिख रहा है आपको पुलवा सब दिख रहा है बास का घर दिख रहा है।

पौधा भी दिख रहा है यहां पर दिख रहा है यहां पर मशीन रखा हुआ दिख रहा है।

मशीन दिख रहा है पौधा दिख रहा है घर सब दिख रहा है दो--

यहां पर त्योहार चल रहा है जिस पर देखिए बहुत सारा फूल रखा हुआ है लिखा हुआ दिख रहा है।

यहां पर पूजा हो रहा है किसी भगवान भगवान यहां पर चादर लटका हुआ है देख बहुत सारे आदमी यहां पर दिख रहे हैं ।

आचार के दिख रहा हैं इसमें घर जो येलो कलर पेंटिंग हुआ हैं पानी टंकी दिख रहा है आसमान दिख रहा जो बड़ा--

यहां पर गाड़ी सब अधिक लगा हुआ दिख रहा है स्पलेंडर प्लस हीरो कंपनी लगा हुआ दिख रहा है।

यहां पर पौधा से अधिक हरा दिख रहा है पोस्ट लगा हुआ दिख रहा है बंगाली भाषा में--

बॉल दिख रहा है टायर दिख रहा है रेड कलर का गाड़ी रखा हुआ है।

शटर दिख रहा है यहां पर दैनिक लिखा हुआ दिख रहा है स मिट्टी दिख रहा है यहां पर घर सब दिख रहा है यहां पर--

घंटी सब दिख रहा हैबड़ा सा फोटो दिख रहा है मूर्ति सब दिख रहा है --

अ व्यक्ति जो चश्मापन पूजा करते हुए दिख रहा है या प दिख रहा है।

घर है पेंडिंग जो वाइट कलर का ये मॉल है इसमें कपड़ा सब दिख रहा है इसमें--

यहां पर लोहा सा दिख रहा है यहां पर डी_जे दिख रहा है आप लड़की का फोटो दिख रहा--

ब्लैक कलर का है इसमें तार का केबल दिख रहा है।

पाइप सब दिख रहा है लोहा दिख रहा है छोड़ दिख रहा है यहां पर --

लोहा दिख रहा है यहां पर चट्टी सामान हुआ बोड़ा पोरा समान हुआ दिख रहा है।

इसमें घर डलिया हो रहा है छोर सब दिख रहा है।

लोहा का प्लेट दिख रहा है और सब आदमी तरह हुए दिख रहा है खानी लगते --

यहां पर पौधा सब दिख रहा है यहां पर तार का पौधा दिख रहा है यहां पर--

बस दिख रहा है यहां पर केला का पौधा दिख रहा है आदमी सब बैठे हुए दिख रहा है रासी लगा दिख रहा है --

केटी बालू सिविर सब दिख रहा है यहां पर लॉकरी सब दिख रहा है बांस सब दिख रहा है और कचरा वाला--

यहां पर लोहा लगा हुआ अधिक सारा दिख रहा है पर लोहा पर दीवार घिरा हुआ दिख रहा है यहां पर--

पेयरिंग होते हुए देख लिखा हुआ पोस्ट पर देख रहे हैं।

ऐसी लगा हुआ दिख रहा है ।

पर कप दिख रहा है देख रहा है यहां पर--

गाड़ी सब दिख रहा है पेंटिंग किया हुआ है दिख रहा है --

यहां पर दूर-दूर तक पहाड़ दिख रहा है आसमान दिख रहा है जो रेड कलर का दिख रहा है।

मोटरसाइकिल लगा हुआ है बड़ा बड़ा मोटरसाइकिल या--

यह पर बैटरी का रिपेयरिंग होता हैं यह पर पोस्टर लगा दिख रहा है मोबाइल ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है।

यहां पर मोटरसाइकिल यहां पर बॉल बढ़ते हुए दिख रहा है चार बॉल बढ़ते हुए दिख रहा है।

घर का कलर है जो वाइट कलर का घर है यहां पर पोस्टर से लगा हुआ दिख रहा --

यहां पर टेबल रखा हुआ है कुर्सी रखा हुआ है दिख रहा है यहां पर शीशा रखा दिख रहा है।

यहां पर आदमी सब बहुत ज्यादा बैठा हुआ दिख रहा है आप बर सा चलते हुए देख--

के बॉर्डर दिख रहा है बॉल बढ़ते हुए दिख रहा है कंक में--

दिख रहा है रोड पथ ये सब दिख रहा है पर ट्रक का शीशा दिख रहा है पर आसमान दिख रहा है जो वाइट--

बॉल बढ़ते हुए दिख रहा है पर घर दिख रहा है रोड का--

पौधा सब दिख रहा है बहुत बड़ा बड़ा पौधा दिख रहा है छोटा सा पोल दिख रहा है तार--

यहां पर लंच लिखा हुआ दिख रहा है यहां पर टावर दिख रहा है बोर्ड लगा हुआ दिख --

सब दिख रहा हैबुक्स दिख रहा है --

यहां पर मॉल है यहां पर कपड़ा सा दिख रहा है।

कपड़ा सब मोड़ के रखा हुआ दिख रहा है शीशा दिख रहा है।

शीशा लगा हुआ दिख रहा है खिड़की सब दिख रहा है ए_सी दिख रहा है पंखा दिख रहा है बॉल लगा हुआ दिख रहा है।

बधा दिख रहा है तार दिख रहा है वाइट कलर से पेंटिंग हुआ घर दिख रहा है खिरकी सब दिख रहा है शटर दिख रहा है कचरा सब नीचे दिख रहा है गिरा हुआ।

पौधा सब दिख रहा है आसमान दिख रहा है और पौधा सब दिख रहा है बड़ा बड़ा पानी गिरते हुए दिख रहा है।

यहां पर हनुमान जी का मूर्ति बनाया गया है और--